चित्र के अंदर लैपटॉप दिखाई दे रहा--

कुछ डिजाइन बनाए हुएं हैं लड़कियों के पैर के नीचे जग दिख रहा हैं।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है।

और उसके अंदर कुर्सी पर बैठा एक व्यक्ति दिख रहा है।

जोकिट पहने हुए दिख रहे हैं और कुछ डेकोरेशन दिख रहा है।

ऑटो खड़ी हुई दिख रही है और वहां पे एक आदमी खड़ा है।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

रेड कलर की बस खड़ी हुई दिख रही है।

एक बड़ी सी बिल्डिंगस दिखाई दे रही।

तार कसी हुई जमीन पर दिख रही है और लोहे के छोटे खंभे दिख रहे हैं।

मुझे एक चित्र दिख रहा है।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा--